बस है जो काला और पीला पट्टी में है इसका नाम है बंदीपुर टाइगर रिजर्व बगल में लाल और नीला कलर का कुर्ता पेहने व्यक्ति खड़ा है।

यह एक किराना और फल की दुकान है।

फेडरल बैंक का ए_टी_एम मशीन है इसमें ए_टी_एम के थ्रू पैसा निकाला जाता है यहाँ पर दो लोग खड़े हैं पैसा निकालने के लिए।

डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पे टेबल लगे हुई है उसके चारों ओर चेयर भी लगे हुए है और यहाँ बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए है।